जिसमें से एक अंकल और एक आंटी बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे हैं।

ये दुकान पंखा का बहोत अच्छा दिख रहा और डिजाइन तो मासाअला बहोत अच्छी है।

ये किसी अमीर का घर है।

टमाटर धनिया सब मिल जाएंगे।

इसके सामने एक लीटर वाला पानी दिख रहा है बीस लीटर पानी जिसमें आता है।

गार्डन काफी तगड़ा दिख रहा है बहोत सुंदर दिख रहा है जैसा कि आप लोग फोटो में देख ही सकते हैं दोनों तरफ हरा-भरा जंगल है झूला वगेरा है।